मा जी एक स्लेटी रंग की बड़ी बारिकी पुराणी ऐतिहासिक इमारत छा देखण मा ये इमारत टुटि फुटि छा लगण लगीं यख मा जी कई सारी ईंट छन रखीं यख मा जी यु ये ही माटा की ईंट कर छन बणाई।

यख मा जी कई सारा डी.जे छन लग्यां कुर्सी छन यख मा जी गमला भी छा यख सामणे मा जी एक पोस्टर कर छ लग्युं यख मा जी टेंट छा लग्युं फूल छन लग्यां रंग बिरंगी लड़ी छन जगण लगीं यख फणी फण रेलिंग छन।

यख मा जी कई सारू सामान छ रख्युं अलग अलग खानो पर अलग अलग प्रकार कु सामान छो रखयूं यख मा जी मैग्गी छ रखी।

यखमा जी एक सुखी नदी छा या फिर कोई शुकयूं समुन्द्र छा यखमा जी कई सारी टूटी-फूटी नावे छन रंग-बिरंगी नावे छन दिखेण लगीं यखमा जी एक कडेलु कड़च दिखेण लग्युं।

चप्पू छन दिखेण लग्यां यख साइड फड़ कई सारा बड़ा बड़ा ढुंगा करचें लक्यां सामने म जी एक हर्युं-भर्युं धांडू चा हारु-भारु पहाड़ चा हर्या-भर्या डाला छन।

पीला लाल गुब्बारा छन लग्यां। यख मा जी रिबन छन दिखेण लग्यां। यख माजी कई सारी मेज अर कुर्सीन मेजों का एंच कई सारा कंप्यूटरन दिखेण लग्यां। यख माजी दीवार पर घड़ी करा लगीं। यख मा जी दिवालम कई सारी तस्वीरें छन लगीं भगवानो की तस्वीरें छन।

इखमा जी एक फलमंडी वाला की दुकान छा यखमा जी कई प्रकार का फल छन रख्यां जामुन छा रख्यां अंगूर छन रख्यां संतरा छन रख्यां शउ छन रख्यां क्याला छन यखमा जी कुछ केला लटक्याँ भी छन।

टीन को छ्प्पर छा यख मा जी एक केवल की तार च दिखेणी कई सारा बिजली का तार भी छन पिछाड़ी फण कई सारा हर्या-भर्या डाला भी छन।

टावर कर छे दिखेण लग्युं यखमा जी सूर्य च दिखेण लग्युं जो अस्त च होण लग्युं।